downloading cpan modules पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि उबन्टु लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर आवश्यक cpan modules कैसे डाउनलोड करते हैं
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ:
आप अपनी पसंद का कोई भी टेक्स्ट editor उपयोग कर सकते हैं
इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको perl प्रोग्रामिंग की कार्यकारी जानकारी होनी चाहिए
यदि नहीं तो सम्बंधित पर्ल स्पोकन ट्यूटोरियल्स के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल वेबसाइट पर जाएँ
पहले हम सीखेंगे कि ubuntu linux os में cpan modules कैसे डाउनलोड करते हैं
terminal पर जाएँ
टाइप करें sudo space cpan और एंटर दबाएं अगर आवश्यकता हो तो पासवर्ड एंटर करें
अगर आपके सिस्टम में cpan संस्थापित नहीं है तो यह आपसे संस्थापन प्रक्रिया के लिए पूछेगा
स्टेप्स के साथ आगे बढ़ें संस्थापन प्रक्रिया के लिए आपका कंप्यूटर इन्टरनेट से जुड़ा होना चाहिए
हम देख सकते हैं कि प्रॉम्प्ट cpan में बदल जाता है
उदाहरण के लिए मैं csv फाइल से कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहती हूँ और अपने पर्ल प्रोग्राम में उपयोग करना चाहती हूँ
इसके लिए हम text colon colon csv मॉड्यूल उपयोग करेंगे
प्रयोग करने से पहले हमें text colon colon csv मॉड्यूल संस्थापित करना है
terminal पर जाएँ
टाइप करें: install text colon colon csv और एंटर दबाएं
हम इस मॉड्यूल के सम्बंधित पैकेजेस का संस्थापन देख सकते हैं
आपके इन्टरनेट की स्पीड के आधार पर संस्थापन पूरा होने में कुछ समय लेगा
अब देखते हैं कि मॉड्यूल सफलतापूर्वक संस्थापित हुआ है या नहीं
cpan से एग्ज़िट के लिए q की दबाएं
टाइप करें: instmodsh और एंटर दबाएं
सारे संस्थापित मॉड्यूल्स की सूची के लिए l टाइप करें
यहाँ हम text colon colon csv देख सकते हैं जो दिखाता है कि मॉड्यूल हमारे सिस्टम में संस्थापित हुआ है
एग्ज़िट के लिए q टाइप करें
अब मैं candidatescsv खोलूँगी जो मैंने पहले ही सेव की है
टाइप करें: gedit candidatescsv और एंटर दबाएं
यहाँ हम एक कॉमा विभाजक के साथ अभ्यर्थियों का नाम आयु जेंडर और ईमेल आईडी देख सकते हैं
अब मैं csvtestpl फाइल खोलूँगी जिसमें मैंने एक पर्ल प्रोग्राम लिखा है जो इस मॉड्यूल को उपयोग करता है
यह प्रोग्राम name field वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करता है जो csv फाइल में संचित की जाती हैं
use स्टेटमेंट text colon colon csv मॉड्यूल को लोड करता है
मैंने लोकल वेरिएबल dollar file पर candidatescsv फाइल घोषित की है
अगला स्टेटमेंट फाइल को read मोड में खोलेगा
text colon colon csv वो class है और हम new के साथ उस constructor को कॉल करके एक instance बना सकते हैं
यह लाइन विभाजक कैरेक्टर को कॉमा सेट करके एक object बनाती है
यहाँ while लूप getline मेथड उपयोग करके लाइन बाइ लाइन डेटा को निकालता है
getline मेथड एक ऐरे पर रेफरेंस रिटर्न करता है
हमें वैल्यूज़ निकलने के लिए इसे डीरेफरेंस करने की ज़रुरत है
index ऑफ़ ज़ीरो उस csv फाइल में name field दिखाता है
print स्टेटमेंट csv फाइल से नामों को प्रिंट करता है
फाइल सेव करने के लिए ctrl+s दबाएं
अब program को निष्पादित करते हैं
टर्मिनल पर वापस जाएँ और टाइप करें: perl csvtestpl और एंटर दबाएं
यहाँ आउटपुट में हम नेम्स फील्ड देख सकते हैं
आगे सीखते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आवश्यक cpan मॉड्यूल्स कैसे डाउनलोड करते हैं
जब पर्ल संस्थापित होता है तो ppm यानि perl package module नामक एक उपयोगिता अपने आप ही संस्थापित हो जाता है
ppm उपयोग करने के लिए आपका कंप्यूटर इन्टरनेट से जुड़ा होना चाहिए
यह उपयोगिता विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर निम्न आवश्यक मॉड्यूल्स के लिए उपयोग की जा सकती है:
अब विंडोज़ os में कमांड विंडो खोलते हैं
कमांड विंडो खोलने के लिए start पर क्लिक करें और टाइप करें cmd और एंटर दबाएं
टाइप करें: perl hyphen v यह देखने के लिए कि पर्ल आपकी विंडोज़ os मशीन पर संस्थापित हुआ है या नहीं
आप पर्ल वर्जन नंबर देखेंगे जो आपकी मशीन पर संस्थापित हुआ है
यदि पर्ल संस्थापित नहीं हुआ है तो इस वेबसाइट पर perl installation ट्यूटोरियल को देखें
यह आपको बताएगा कि विंडोज़ os पर पर्ल कैसे संस्थापित किया जाता है
dos प्रॉम्प्ट पर टाइप करें: ppm install text colon colon csv और एंटर दबाएं
कृपया ध्यान दें मॉड्यूल नाम केस सेन्सिटिव होते हैं
हम देख सकते हैं कि संस्थापन प्रक्रिया शुरू हो गयी है संस्थापन पूरा होने तक इंतज़ार करें
मैंने मौजूदा कार्यकारी डायरेक्टरी पर candidatescsv और csvtestpl फाइल कॉपी कर ली है
अब पर्ल प्रोग्राम निष्पादित करते हैं
कमांड विंडो में टाइप करें: perl csvtestpl और एंटर दबाएं
आउटपुट यहाँ है
यह हमें इस ट्यूटोरियल की समाप्ति पर लाता है इसे सारांशित करते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि लिनक्स और विंडोज़ में आवश्यक cpan modules कैसे डाउनलोड करते हैं
यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है
निम्न link पर उपलब्ध video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे download करें और देखें
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम: स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाणपत्र देती है
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट भारत सरकार के mhrd के nmeict द्वारा निधिबद्ध है इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है